--कुछ कीड़े भी रखे हुए है अलग अलग कलर के है अलग अलग वैरायटी है एक आंटी मछलियाँ बेच रही है जिन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पेहनी हुई है।

एक तरफ स्टिकर्स टंगे हुए है जिन पर इमोजी बने हुए है रबर रखी हुई है पेंसिल्स रखी हुई है।

पीछे बहोत बड़े-बड़े सॉफ्ट सोफे रखे है आगे छोटे-छोटे सोफे के सेट रखे हुए है सोफे के ऊपर रंग बिरंगे कपड़ा है ।

एक पेट्रोल पंप है जिसकी ओपनिंग हुई है एक वाइट कलर की बड़ी कार खड़ी हुई है।

एक तरफ कोई पीयानो बजा रहा है बहुत सारी डोरिया पड़ी हुई है एक स्टूल रखा हुआ हैं ।

रंग -बिरंगी फूल है ऊपर चादर से अ ढका हुआ हैं ।

दो पीछे-पीछे छोटे गुम्बद बने है जिनके ऊपर झण्डे लगे हुए हैं ।

एक बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है चर्च सफेद कलर का है जिसपे नीले कलर की पट्टिया लगी हुई है।

सामने छोटी सी दो मूर्तियां रखी हुई है मूर्तियां के नीचे नाम लिखें हुए है।

बाइक में दो टायर लगे हुए है बाइक ब्लैक कलर की हैं ।

हैयर सलून है सलून में बहोत सारे हैयर कट चल रहै है।

पीछे एक नीले कलर का बड़ा- सा टेबल रखा हुआ है एक काउंटर पे टेबल है जो सफेद कलर का हैं ।

कराटे क्लास है जहाँ पे बच्चे कराटे सिख रहै है बच्चो ने सफेद कलर का सूट पहना हुआ हैं।

एक दीवार है जिस पर इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड काले अच्छरो से लिखा हुआ हैं ।

उसके पीछे छोटी -सी बच्ची खड़ी हुई है एक दद्दू है दद्दू ने पगड़ी बांधा हुआ है और नीचे धोती पहनी हुई है ।

सामने एक सफेद कलर की बड़ी -सी बस खड़ी हुई है बस के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं ।

जिसका नाम ऊपर पीले शब्दों में लिखा हुआ है सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसपे मेन्यू लिखा हुआ है ।